साथ में एक सड़क भी है पेड़ों की परछाई पानी में दिखाई दे रही है।

बहोत से लोग कसरत करने आए हुए हैं यहां पर कसरत की विभिन्न प्रकार की मशीने लगी हुई हैं।

पार्क में बड़ी बड़ी लाइटें भी लगी हुई हैं।

और घर के ऊपर एक बालकनी भी है जिसमें दो खिड़कियां और एक दरवाजा भी है।

नीचे जमीन पर हरी हरी घास दिखाई दे रही है जिसके ऊपर कुछ सूखे पीले रंग के पत्ते पड़े हुए हैं।

शर्ट पहने हुए जा रहा है हेलमेट लगाके पीछे दो लड़कियां स्कूटी चला रहीं हैं।

यहां पर टेक इन कैफे मे कोई भी नहीं बैठा हुआ है ऊपर खाने के चित्र दिखाई दे रहे --

मैदान के साइड में फुटपाथ बना हुआ है फुटपाथ पर कुछ लोग बैठे हैं कुछ खड़े हुए हैं एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक फूलों की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर बहोत ही सुंदर सुंदर फूल --

इस चित्र में एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है यहां पर बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स लगाई गई है।

दो या तीन माले के दिख रहे हैं सड़क के उस तरफ फुटपाथ है फुटपाथ पर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में भी सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर एक मोटरसाइकल और एक स्कूटी खड़ी हुई है।